और मूर्ति रखी हुई है इसमें बहोत सारी अलमारियां र--

यह एक टेलर की दुकान है इसमे बहोत सारी मशीने रखी हुई है और ये सिलाई करता है शर्ट --